--पीछे आसमान हैं नीचे टाइल्से लगी हुई हैं और अगल बगल घासे हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही है और लोहे की बॉउंड्रीज़ भी बनी हैं जिनके उपर की तारे बिछी हुई है।